प्रोजेक्ट को बनाने में बोहोत अच्छा लगता है। बच्चों को छुट्टियों में होम वर्क के रूप में प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है और बच्चे उसे बना के ले जाते हैं टीचर को दिखाने।

यह एक थाना है जमुई जिला का और थाने में लोग आते हैं रिपोर्ट लिखाने केस करने और यहाँ पे पुलिस अधिकारी होते हैं।